इन सब में प्राइस टैग लगे हुए नजर आ रहें हैं जिस से कस्टमर को लेने में कोई दिक्कत ना हो।

यह चित्र में संतरे कलर का रोड दिखाई दे रहा हैजिसमें संतरे कलर की मिट्टी लगी हुई है और उसके पीछे एक कारखाना भी नजर आ रहा है।

यह चित्र मे कुछ स्पोर्ट्समैन नजर आ रहे है जो की मैदान मे रनिंग के लिए आऐ है यह लोग दोड़ क दोड़ कर के --

और दो सोफ़े अलग-अलग बने हुए है इनपे नीले कलर की चद्दर भी लगाई हुई है।

ये चित्र में एक घर बनते हुए नजर आ रहा है जिसको लकड़ी के सहारे से और उपर बनाया जा रहा है और काम अभी इसका शुरू ही नजर आ रहा है।

चित्र में एक बगुला दिखाई दे रहा है जिसकी चोच संतरे कलर की नज़र आ रही है और इन के पिचे हरी-भरी घास लम्बी लम्बी घास दिखाई दे रही है और यह बगुला पानी की ओर उछाल रहे हैं।

ये चित्र में एक पुल नजर आ रहा हैजिसके नीचे दो एक आदमी अपने बच्चे को लिए हुए दिखाई दे रहा है।

ये लोग द सिटी कैफ़े के सामने फोटो निकाल रहे हैं।